बहुस खूब-सूरत दिखता है ।

इस में दो एक खम्बा है।

बहुत सारे फूल हैं बहुत तरह के फूल हैं।

रंग बिंग रंग बिरंगे फूल है।

ये बहुत खूबसूरत हेयर कटिंग है इसमें ऐसी पंखा --